किनारों को ब्राउन कलर से पेंट किया गया है सीलिंग पर बहुत सारे बल्ब लगाया गया है।

जहां पर एक रेड कलर की बस लगी हुई है।

पेड़ की लतिया जम गई है आस पास--

एक ब्लू पोस्टर पे कॉन्सेप्ट के सेंटर --

एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सर पर कपरा बाॅंध रखा है और उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब हैं।

सामने एक लकड़ी छिलने वाला मशीन दिख रहा है और बगल में बहोत सारे लकड़ियों का--

वहां पर दो हाथी दो बंदर दो चीता दो भालू दो शेर दो--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जिसका गेट ब्राउन कलर और व्हाइट कलर से प्रिंटेड है।

मंदिर दिख रहा हैं जहां पर बहुत सारे--

कपड़ों को रैंकों में सजाकर के रखा गया है।